नजर आ रहा है।

यहां फूलों की सजावट की गई है जोकि देखने में बहुत सुंदर नजर आ रहा है।

फूलों से और बाहर एक मोर भी खड़ा किया गया है जो की आर्टिफिशियल है।

जोकि यह प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे--

इस फोटो के अंदर एक पार्क नजर आ रहा है पार्क के अंदर एक फाउंटेन नजर आ रहा है जिसके अंदर पानी के फव्वारे चल रहे हैं।

ऐसा नजर आ रहा है कि ये कांच अलग अलग रंग के लगे हुए है।

इस फोटो के अंदर एक पार्क नजर आ रहा है पार्क के अंदर बहुत सारी खास पूस लगी हुई है।

होटल के तरफ गिला कलर का डस्टबिन भी नजर आ रहा है।